सामने एक बच्च एक आदमी मोबाइल देख रहा है ब्लू शर्ट वाला।

जैसे कि आपको पता है कि जिम में कभी भी कुछ करते हैं तो जूता पहनना चाहिए और ये भाई ने व्हाइट कलर जूता पहन के रखा है।

और साइड वाले पांच जन झंडा पकड़ के खड़े है।

नोंग ढंग से सकते हैं और उसको क्योंकी अंदर बहोत ज्यादा ही देख सकते हैं जैसे की--

ऊपर से एक टावर जा रहा है टावर नहीं ब्रिज बोल सकते हैं उसको ट्रेन का।

शादी हो रहा है किसी का सामने दुल्हन दुल्हन बैठे हुए हैं उनके मां बाप भी है।

जैसे हम देख सकते हैं। ये अपना मार्ट हैं। अपना मार्ट गायब भी होता है। ये डिफरेंट स्टॉक --